बहोत मस्त झरना है और काफ़ी अच्छा है और मतलब यहाँ पे फोटो ओटो खिचवाना रहे तो सबसे सही जगह यही है।

यह एक होटल है जहां का डेकोरेशन बहुत अच्छा हुआ है।

तभी कुछ ही लोग कर पाते हैं इस डांस को।

ये गोरखपुर के पार्क का सीन है और यहाँ मतलब अ इवनिंग का सीन है और बहोत अच्छा लग रहा है ये।

सारे फल अच्छे हैं और हम लोग को फल खाने भी चाहिए। अंगूर भी है केला-ओला भी है और भी फ-फ्रूट्स हैं यहां पे फल-ओल।

और यहां का मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और यहां पे लोग सड़क है आ जा रहे हैं और बगल में पार्क और करने के लिए गाड़ी भी है और बाहर मतलब बहुत अच्छा व्यू है इस चीज पैलेस का --